राजश्री बुक लिखा हुआ है यहाँ पर बहुत सी गाड़ी खड़ी हुई हैं बहुत से लोग खड़े हुए हैं और साइड में बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है देखने में बहुत अच्छे लग रहे है ।

यहाँ पे ये ए.टी.एम. का है और पीछे भी कुछ लिखा हुआ है ताकि वह बहुत ब्लर बता रहा है और बहुत से लोग बैठे हुए हैं बहुत से लोग खड़े हुए हैं।

जैसे कि हम देख पा रहे है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और सामने सर एक ब्लैक और वाइट बोर्ड में लिखा रहे हैं।

जैसे कि हम यहां पर देख पा रहे हैं यहां पे बहुत सुंदर पहाड़ी इलाका है यहां पर बहुत अच्छी हरियाली छाई हुई है।

और एक दिशा में बैनर भी है बल्कि वह बहुत ब्लर हो रहा है बता बता रहा है।

जैसे कि हम यहाँ देख सकते है शायद शादी का माहौल चल रहा है और एक बड़ा सा हाउस है उसमें बहुत अच्छी लाइटिंग दिख रही है बहुत से लोग खड़े हुए है।

और नीचे एक होल टाइप का है ऐसा लग रहा है गुफा है वो और नीचे एक खास नी घास निकली हुई है वो देखने में अच्छी लग रही है।

और ऊपर साइड में कुछ लिखा हुआ है ताकि वो बहुत ब्लर बता रहा है।

यहाँ ये देख सकते है आप ये शायद स्कूल का सीन है यहाँ पे बहुत सारे लोग बच्चे हाथ पकड़े खड़े हुए हैं एक दूसरे का --